चैनल गेट लगा हुआ है शटर लगी हुई है बाइक लगी हुई है और एक आदमी खड़ा हुआ है रेलिंग लगी हुई है और पीछे खिड़की और मकान है और एक पेड़ है।

पेड़ भी लगे हुए है रोड है यहाँ पर।

और लोहे के गेट लगे हुए है और झंडा लगा हुआ है और गौ माता बनी हुई है।